रखा गया है इसमें गेंदा का फूल दिखाई दे रहा है चमेली का फूल दिखाई दे रहा है और गुलाब का फूल भी दिखाई दे रहा है।

जो एक मेढ़ की आकृति में है इसमें कुछ किसान खेती करनें की तैयारी में लग रहा है।